जेनसों के कपड़े भी रखे हुए हैं और लेडीजो के कपड़े भी रखे हुए हैं। कंबल वगेरा रखे हुए हैं।

इसकी घुम्मट बनी हुई है और नीचे भी मंदिर है ऊपर भी हैं।

कुछ डिब्बे दिख रहे है जैसे कि कुछ अंडरवियर वगेरा रखे हुए हैं। यहाँ पे कई सारे डिब्बे रखे हैं।

और ना नीचे यहाँ संगमरमर की मूर्ति बनी हुई है।

एक लड़का बिलकुल सामने ही देख रहा है। स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए है। ऐसे छे छः-सात लोग बैठे --

एक बिल्डिंग सी बनी हुई है और आजू-बाजू में छोटे-छोटे से पेड़ लगे हुए हैं।

और यहाँ पे ना बोहोत सारे खोके टाइप के कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे ।

यहाँ पे ना बकरी वगेरा हैं। तीन-चार --

यहाँ पे कुछ लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं।

ये सब सामान रखे है कुछ शीट वगैरह भी रखे हुए है यहाँ पे --